और आगे दर्शक बैठे हैं कुर्सियां और सोफो पर और यहां लाइटें भी लगी हुई हैं पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारा बहोत बड़ा एक कमरा दिखाए जा रहे है जिसमें टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

बहोत सारे कार्टून रखे हुए हैं और पास में एक स्टूल भी रखा हुआ है उधर साइड एक बैग है उसमें लाल कलर के कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे।

बहोत बड़ा एक खंभा दो खंभों के ऊपर लगा हुआ है रोलिंग और पुल बनाया हुआ है और पास में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं।

और पास में ये डांस के लिए कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है और पीछे कुछ पेड़ पौधे बहुत सारे लग रहे हैं पीछे घर भी हैं।

इस तस्वीर में ये बहुत ही बड़ा बंगला बना हुआ है और ये इनके पीछे कुछ ये बांध बनाया हुआ है पानी के।

इस तस्वीर में ये बहोत ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी कुर्सियां रखी हुई है सोफे की तरह और ये पास में कुछ बॉक्स में रखा हुआ है बॉक्स बनाएं --

और यहां पास में सोफे बनाए गए हैं।

इस तस्वीर में ये बहुत ही बड़ी लाइ--

हैं पढ़ने से लिए और यहां कुछ रेलिंग पर दस आठ ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं ऊपर कि तरफ एक पोस्टर है उस पर कुछ लिखा हुआ --

और कुछ यहाँ नीचे बॉक्स रखे हुए हैं।